इस महल या फिर इस प्लेस के बारे में नहीं पता है पर मै यहाँ के एनवायरमेंट के बात करू तो ये काफी अच्छा है।

गर्मी का टाइम है कुछ व्हीकल्स वगैरा रोड पे आ रहे है जा रहे है।

व्यू भी अच्छा है और धूप निकल रखा है क्लाइमेट काफी अच्छा है।

यह मैकेट की व्यू है आई थिंक रूट है और यह बरसात का मौसम है और सब अपनी अपनी दुकान के आगे रोड साइड में सबकी दुकाने हैं दुकान के ऊपर सब लोग एक --

ये सनसेट की व्यू है जो ये सनसेट की व्यू है जो--